इस दृश्य में शायद हमें कोई गैराज दिखाया जा रहा है।

उसके साथ एक और इंसान भी बैठा है।

यह शायद कोई इवेंट का दृश्य है इसमें हमें ऐ_सी भी लगा दिख रहा है।

हमें एक सफेद रंग की इमारत--

देखने से यह हमें एरोप्लेन के अंदर का दृश्य लग रहा है।

इसमें हमें बहोत भगवानों की मूर्ति पड़ी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें एक बहोत बड़ी दुकान नजर आ रही है।